इस चित्र में एक फेड्रिक बन रहा है जो कि बहुत ही लोहा लोहा दिख रहा है बहुत सारे चीज से उठाकर रखे वाला है और नीचे बहुत सारे कीचड़ बने पड़े है।

और गाड़ी का बहुत ज्यादा निशान बनाए हुए हैं बहुत सारा माटी रखा हुआ है।

कुछ पोस्टर बना बना के लगाया हुआ है ऊपर ए_सी वाला मशीन दिख रहा है।

और दो कुर्सियां दिख रही है एक मीटर दिख रहा है। नीचे कुछ रखे हुए हैं इधर बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं।

और ब्लैक रंग से पेंट किया हुआ है नीचे बैठने वाला बनाया हुआ है पूरा गोले गोले शीशा से पैक है।

इस चित्र में एक कपड़े का दुकान दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पैंट लटके हुए हैं और टी शर्ट बहुत सारे हैं।

इस चित्र में एक कोयला का खान दिख रहा है और तीन जे_सी_बी दिख रहे हैं जो कि तीनों पीले रंग से हैं बहुत सारे काले काले मिट्टी दिख रहे हैं।

चित्र में एक आदमी खड़ा है इसके थैली में एक पेन दिख रही है और पूरा गोले गोले रैक में भरा हुआ है।

चित्र में दो सोलर दिख रहे हैं जो की लगाए हुए हैं और बहुत सारा जाली दिख रहा है जो कि तार से बांधा हुआ है।

इसके बगल में एक बास गड़ा हुआ है और झंडा लगाया हुआ है बहुत सारे ईंटें दिख रहे हैं।

एक इधर भी बस लगा हुआ है और हरा हरा पेड़ दिख रहा है।

आग को बुताने वाला लगा हुआ हैं एक खिड़की दिख रही हैं जो की रॉड से लगाया हुआ हैं।

रंग का कपड़ा पहना हुआ है और सीधा से खड़ा है पीला लाल गुलाबी बहुत तरह तरह के फूल दिख रहे हैं।

चित्र में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जिसमें एक बच्चा जा रहा है और एक गाड़ी लगा हुआ है।

और गोले गोले रेलिंग लगा हुआ है नीचे भी एक सेटर दिख रहा है बच्चा जा रहा है सीढ़ी से और कुछ लिखा हुआ है।

नीचे बहुत ही बड़ा फिल्ड दिख रहा हैं और व्हाइट रंग से इधर उधर बनाया हुआ हैं बहुत सारे नंबर दिख रहे है।

इस चित्र में एक बहुत ही बड़ा घर दिख रहा है जिसके नीचे बहुत सारे लोग हैं।

ऊपर में पेंट किया हुआ है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत और एक मोबाइल से फोटो खींच रहा है।